अह उ बाइक टाइप का लटका हुआ नजर आ रहा है।

और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं की टेबुल पर--

कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं एक खड़े हैं।

इस चश्मे में मुझे पूरा धुंधला पन नजर आ रहा है।

लेफ्ट साइड में जो हरे भरे घने जंगल पेड़ लगे हैं जो हरे दिख रहे हैं।

और फ्रंट पर चेयर रखा हुआ है आस पास दिखाई नहीं दे रहा है।

ते पेट्रोल - उट्रोल भराने डीजल भराने आते होंगे।

हल्का लालीपन दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन क्या है क्या नहीं है जो है स्पष्ट रूप से--

स्पोर्स होगा ये कहना मुश्किल है आकाश में धुंधलापन दि--

और एम_आई का मोबाइल जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन--

अह पेट है जो हल्का स्काई कलर का दिखाई दे रहा है।

रखे हुए है किस चीज का है ये समझ में नहीं आ रा--

फील्ड राइट साइड में कुछ दिखाई नहीं दे रहे है कि और क्या है क्या नहीं है लेफ्ट साइड में सब कुछ दिखाई --